लोग सिंचाई करते है नदी से नहाते है।

यहाँ दूर दूर से चिट्टिया भेजते है अपने परिवार के लिए।

दिन काफी अच्छा है इसमें मोबामा होती हैं।

और यह जामताड़ा बाजार के --

काफी सारे ग्राहक यहाँ पे रहते हैं।

एरोप्लेन लगी हुई हैंअभी उड़ान भरेंगी।

आह काफी भीड़ होती हैं यहां का पेट्रोल काफी अच्छा होता है।